इस तस्वीर को देखने पे ये प्रत -प्रतित होता हो रहा है कि ये कोई दुकान है जिसके सामने कुछ लोग सामान लेने गए हुए है।

तथा एक पुरुष सेल्फ़ी केमरा से इन दोनों की तस्वीरे लेने की प्रयास कर रहा है।

जिसमें लोग महिलाएं युवा तथा बच्चे सारे लोग अपने अपने तरीके से आनदं का अनुभव कर रहे हैं।

एक ऑटो खड़ी हुई रास्ते पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा एक बच्चा किसी कार्य से कहीं जा रहा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस के विषयक मे ब कूछ बोल रहा है या फिर कोई राष्ट्र गीत या कोई राष्ट्र गान सुना रहा है।

इस व इस चित्र मे दो व्यक्ति कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व कुछ व्यक्ति ऐसे ही विचरण करते हुए कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति एसबीआई बैंक मे भी जा सकते हैं।

ये अपने एकता का प्रतीक प्रतीत करने के लिए अपने हाथो को एक पास लाकर एक जुट बना कर दिखा रहे है जोकि एक अच्छी --

यह तस्वीर भी एक फूलों की ही दुकान की ही है बहोत ही सुन्दर-सुन्दर फूलों से बनी हुई मालाएं इस दुकान में देखि जा सकती हैं जैसे गुलाब की चमेली की गुड़हल की व अन्य बहोत सी सुन्दर- सुन्दर फूलों की मालाएं।

यह तस्वीर भी एक मछली मंडी की ही हैं जहाँ पर अनेक तरह की दुकाने मछलियों को बेचने के लिए ही लगी हुई हैं सामने एक दादी माँ --